ये किसी शॉप का फोटो है अच्छी बड़ी ग्रोसरी शॉप का यहाँ पर बहुत सारी चीजे रखी है डेटॉल फिनाइल --

एक ग्राउंड बना हुआ है इसके ऊपर एस.पि.एस. ग्लोबल लिखा हुआ है।

और वहीं दो लोग तीसरी गाड़ी का काम देख रहे हैं।

और दूर-दूर तक काफी जमीन दिखाई दे रही है कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं और आसमान दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में गणेश जी की मूर्त्ति दिखाई दे रही है जिसके बाहर से --

ये स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया के बाहर का फोटो है एक बिल्डिंग में ये खुला हुआ है उसके बाहर --

हर जगह नीला-नीला नजर दिखाई दे रहत है ऊपर लाइट लगी दिखाई दे रहत